एक साड़ी का शॉप है जोकि चारों तरफ साड़ी ही साड़ी है अलग अलग रंग की साड़ियाँ हैं इसके नीचे रेड कलर ड्रावर है उसका काउंटर रेड कलर का है जिसपे काँच लगा हुआ है उसके अंडर चेयर का भी कलर रेड कलर का ही है जिसका नीचे का उसमें शीशा लगा हुआ है और--

चार बिल्डिंग हैं बिल्डिंग चार-चार माला की है जो कि कलर वाइट और ग्रे है उसके बाहर तीन-चार गाड़ियाँ हैं उसके बाहर दो तीन गमले लगे हुए हैं एक के यहाँ पे बॉडी ऐ गार्ड बैठा हुआ है उसके ढेर सारे अपोजिट साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके एक साइड पेड़ भी है।

यहाँ एक ग्राउंड है ग्राउंड में काफी लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर का टी-शर्ट एक रेड कलर का टी-शर्ट पहने हुए है वाइट कलर का शू भी पहने हुए है उसके पीछे बहुत बड़ा पेड़ है काफी लोग खड़े हैं |

''यहाँ एक मेंस सैलून है जो कि शटर अभी आधा गिरा हुआ है बोर्ड पर एक स्टेचू बना हुआ है कैंची का स्टेचू बना हुआ है ।''